कॉफी के लिए कप रखा हुआ है।

ये एक बस दिख रही है।

सड़क में दो आदमी खड़े हैं।

ये एक ऑफिस है।

एक लड़का ब्लैक टी-शर्ट में बैठा है।

लगी हुई है एक लोहे की अलमीरा है जहाँ बोतल में कुछ रखा हुआ है।

कमरा बहुत गंदा है।

कूड़े बिखरे हुए हैं।

ये बहुत बड़ी पहाड़ है।

काफी बढ़िया पहाड़ बनी हुई है।

एस_एस कंपनी के एडीडास कंपनी के--

एक सड़क दिख रही है।

बाइक का नंबर एच_आर_एट_एट --

काला टी-शर्ट पहने हुए बाइक पे झुका हुआ है।

स्पीकर घर के बाहर--

कुछ मशीन सा रखा है।

स्कूल में बेंच लगा हुआ है।

सामने इंडियन डेरी --

एक गाड़ी दिख रही है।

और एक बच्चा दूर बैठा है।

बैग लटकाए जा रहा है।

घास भी दिख रही है।

जहाँ एक ट्रेन चल रही है।

सब साफ दिख रहा है।

स्टैचू बना हुआ है।

बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिख रही है।

बाहर मैदान है।